इसमें हमको स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको ए फोर साइज पेपर भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मु हमको टिशू भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमको बहुत सारा कॉस्मैटिक्स दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको हरा रंग का प्लास्टिक भी चिपकाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको हरा रंग का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको काला और सफेद रंग लगाया हुआ गेट भी दिखाई दे रहा है।

वॉल को बैंगनी और लाल रंग लगाया हुआ है।

पास में नीले और सफेद रंग का बदला भी दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको बहुत सारा सॉस का बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

इसमें हमको बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।